मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
मन की बात की शुरुआत में आज मैं आप सबके साथ एक खुशखबरी साझा करना चाहता हूँ
हर भारतीय को यह जानकर गर्व होगा कि देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कैनाडा से वापस भारत आ रही है
यह प्रतिमा लगभग 100 साल पहले 1913 के करीब वाराणसी के एक मंदिर से चुराकर देश से बाहर भेज दी गयी थी
मैं कैनाडा की सरकार और इस पुण्य कार्य को सम्भव बनाने वाले सभी लोगों का इस सहृदयता के लिये आभार प्रकट करता हूँ
माता अन्नपूर्णा का काशी से बहुत ही विशेष संबंध है
अब उनकी प्रतिमा का वापस आना हम सभी के लिए सुखद है
माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा की तरह ही हमारी विरासत की अनेक अनमोल धरोहरें अंतर्राष्ट्रीय गिरोंहों का शिकार होती रही हैं
ये गिरोह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन्हें बहुत ऊँची कीमत पर बेचते हैं
अब इन पर सख्ती तो लगायी ही जा रही है इनकी वापसी के लिए भारत ने अपने प्रयास भी बढ़ायें हैं
ऐसी कोशिशों की वजह से बीते कुछ वर्षों में भारत कई प्रतिमाओं और कलाकृतियों को वापस लाने में सफल रहा है
माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा की वापसी के साथ एक संयोग ये भी जुड़ा है कि कुछ दिन पूर्व ही वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया गया है
वर्ल्ड हेरिटेज वीक संस्कृति प्रेमियों के लिये पुराने समय में वापस जाने उनके इतिहास के अहम् पड़ावों को पता लगाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है
कोरोना कालखंड के बावजूद भी इस बार हमने इनोवेटिव तरीके से लोगों को ये हेरिटेज वीक मनाते देखा
क्राइसिस में कल्चर बड़े काम आता है इससे निपटने में अहम् भूमिका निभाता है
टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी कल्चर एक इमोशनल रिचार्ज की तरह काम करता है
आज देश में कई म्यूजियम्स और लाइब्रेरीज अपने कलेक्शन को पूरी तरह से डिजिटल बनाने पर काम कर रहे हैं
दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय ने इस सम्बन्ध में कुछ सराहनीय प्रयास किये हैं
राष्ट्रीय संग्राहलय द्वारा करीब दस वर्चुअल गैलरीज इंट्रोड्यूस करने की दिशा में काम चल रहा है है ना मज़ेदार अब आप घर बैठे दिल्ली के नेशनल म्यूजियम गैलरीज का टूर कर पायेंगे
जहां एक ओर सांस्कृतिक धरोहरों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से अधिकसेअधिक लोगों तक पहुंचाना अहम् है वहीँ इन धरोहरों के संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग भी महत्वपूर्ण है
हाल ही में एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहा था
नॉर्वे के उत्तर में स्वालबार्ड नाम का एक द्वीप है
इस द्वीप में एक प्रोजेक्ट आर्क्टिक वर्ल्ड आर्काइव बनाया गया है
इस आर्काइव में बहुमूल्य हेरिटेज दाता को इस प्रकार से रखा गया है कि किसी भी प्रकार के प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से प्रभावित ना हो सकें
अभी हाल ही में यह भी जानकारी आयी है कि अजन्ता गुफाओं की धरोहर को भी डिजिटाइज करके इस प्रोजेक्ट में संजोया जा रहा है
इसमें अजन्ता गुफाओं की पूरी झलक देखने को मिलेगी
इसमें डिजिटलाइज्ड और रिस्टोर्ड पेंटिंग के साथसाथ इससे सम्बंधित दस्तावेज़ और क्वोट्स भी शामिल होंगे
साथियो महामारी ने एक ओर जहाँ हमारे काम करने के तौरतरीकों को बदला है तो दूसरी ओर प्रकृति को नये ढंग से अनुभव करने का भी अवसर दिया है
प्रकृति को देखने के हमारे नज़रिये में भी बदलाव आया है
अब हम सर्दियों के मौसम में कदम रख रहे हैं
हमें प्रकृति के अलगअलग रंग देखने को मिलेंगे
पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट चेरी ब्लॉसम्स की विरल तस्वीरों से भरा हुआ है
आप सोच रहे होंगे जब मैं चेरी ब्लॉसम्स की बात कर रहा हूँ तो जापान की इस प्रसिद्ध पहचान की बात कर रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं है ये जापान की तस्वीरें नहीं हैं
ये अपने मेघालय के शिलाँग की तस्वीरें हैं
मेघालय की खूबसूरती को इन चेरी ब्लॉसम्स ने और बढ़ा दिया है
साथियो इस महीने 12 नवंबर से डॉक्टर सलीम अली जी का 125वाँ जयंती समारोह शुरू हुआ है
डॉक्टर सलीम ने पक्षियों की दुनिया में बर्ड वॉचिंग को लेकर उल्लेखनीय कार्य किया है
दुनिया के बर्ड वॉचर्स को भारत के प्रति आकर्षित भी किया है
मैं हमेशा से बर्ड वॉचिंग के शौकीन लोगों का प्रशंसक रहा हूं
बहुत धैर्य के साथ वो घंटों तक सुबह से शाम तक बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं प्रकृति के अनूठे नजारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं और अपने ज्ञान को हम लोगों तक भी पहुंचाते रहते हैं
भारत में भी बहुतसी बर्ड वॉचिंग सोसाइटी सक्रिय हैं
आप भी जरूर इस विषय के साथ जुड़िये
मेरी भागदौड़ की ज़िन्दगी में मुझे भी पिछले दिनों केवड़िया में पक्षियों के साथ समय बिताने का बहुत ही यादगार अवसर मिला
पक्षियों के साथ बिताया हुआ समय आपको प्रकृति से भी जोड़ेगा और पर्यावरण के लिए भी प्रेरणा देगा
मेरे प्यारे देशवासियो भारत की संस्कृति और शास्त्र हमेशा से ही पूरी दुनिया के लिए आकर्षण के केंद्र रहे हैं
कई लोग तो इनकी खोज में भारत आए और हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए तो कई लोग वापस अपने देश जाकर इस संस्कृति के संवाहक बन गए
मुझे जोनास मसेट्टी के काम के बारे में जानने का मौका मिला जिन्हें विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है
जॉनस ब्राजील में लोगों को वेदांत और गीता सिखाते हैं
वे विश्वविद्या नाम की एक संस्था चलाते हैं जो रियो डि जेनेरो रियो डीई जनेरो से घंटें भर की दूरी पर Petrópolis पेट्रोपोलिस के पहाड़ों में स्थित है
जॉनस ने मेकेनिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी में काम किया बाद में उनका रुझान भारतीय संस्कृति और खासकर वेदान्त की तरफ हो गया
स्टॉक से लेकर के स्पिरिचुअलिटी तक वास्तव में उनकी एक लंबी यात्रा है
जॉनस ने भारत में वेदांत दर्शन का अध्ययन किया और 4 साल तक वे कोयंबटूर के आर्ष विद्या गुरूकुलम में रहे हैं
जॉनस में एक और खासियत है वो अपने मैसेज को आगे पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं
वह नियमित रूप से ओनलाइन प्रोग्रामेस करते हैं
वे प्रतिदिन पोडकास्ट पोडकास्ट करते हैं
पिछले 7 वर्षों में जॉनस ने वेदांत पर अपने फ्री ओपन कोर्सेस के माध्यम से डेढ़ लाख से अधिक स्टूडेंट्स को पढ़ाया है
जॉनस ना केवल एक बड़ा काम कर रहे हैं बल्कि उसे एक ऐसी भाषा में कर रहे हैं जिसे समझने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है
लोगों में इसको लेकर काफी रुचि है कि कोरोना और क्वारंटाइन के इस समय में वेदांत कैसे मदद कर सकता है मन की बात के माध्यम से मैं जॉनस को उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं
साथियो इसी तरह अभी एक खबर पर आपका ध्यान जरूर गया होगा
न्यूजीलैंड में वहाँ के नवनिर्वाचित एमपी डॉ० गौरव शर्मा ने विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत भाषा में शपथ ली है
एक भारतीय के तौर पर भारतीय संस्कृति का यह प्रसार हम सब को गर्व से भर देता है
मन की बात के माध्यम से मैं गौरव शर्मा जी को शुभकामनाएं देता हूं
हम सभी की कामना है वो न्यूजीलैंड के लोगों की सेवा में नई उपलब्धियां प्राप्त करें
मेरे प्यारे देशवासियो कल 30 नवंबर को हम श्री गुरु नानक देव जी का 551वाँ प्रकाश पर्व मनाएंगे
पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है
वैनकूवर से वेलिंगटन तक सिंगापुर से साउथ अफ्रीका तक उनके संदेश हर तरफ सुनाई देते हैं
गुरुग्रन्थ साहिब में कहा गया है सेवक को सेवा बन आई यानी सेवक का काम सेवा करना है
बीते कुछ वर्षों में कई अहम पड़ाव आये और एक सेवक के तौर पर हमें बहुत कुछ करने का अवसर मिला
गुरु साहिब ने हमसे सेवा ली
गुरु नानक देव जी का ही 550वाँ प्रकाश पर्व श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वाँ प्रकाश पर्व अगले वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वाँ प्रकाश पर्व भी है
मुझे महसूस होता है कि गुरु साहब की मुझ पर विशेष कृपा रही जो उन्होंने मुझे हमेशा अपने कार्यों में बहुत करीब से जोड़ा है
साथियो क्या आप जानते हैं कि कच्छ में एक गुरुद्वारा है लखपत गुरुद्वारा साहिब
श्री गुरु नानक जी अपने उदासी के दौरान लखपत गुरुद्वारा साहिब में रुके थे
2001 के भूकंप से इस गुरूद्वारे को भी नुकसान पहुँचा था
यह गुरु साहिब की कृपा ही थी कि मैं इसका जीर्णोद्धार सुनिश्चित कर पाया
ना केवल गुरुद्वारा की मरम्मत की गई बल्कि उसके गौरव और भव्यता को भी फिर से स्थापित किया गया
हम सब को गुरु साहिब का भरपूर आशीर्वाद भी मिला
लखपत गुरुद्वारा के संरक्षण के प्रयासों को 2004 में यूनेस्को एएसआईए पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड में अवार्ड ओएफ डिस्टिंक्शन दिया गया
अवार्ड देने वाली जुरी ने ये पाया कि मरम्मत के दौरान शिल्प से जुड़ी बारीकियों का विशेष ध्यान रखा गया
जुरी ने यह भी नोट किया कि गुरुद्वारा के पुनर्निर्माण कार्य में सिख समुदाय की ना केवल सक्रिय भागीदारी रही बल्कि उनके ही मार्गदर्शन में ये काम हुआ
लखपत गुरुद्वारा जाने का सौभाग्य मुझे तब भी मिला था जब मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था
मुझे वहाँ जाकर असीम ऊर्जा मिलती थी
इस गुरूद्वारे में जाकर हर कोई खुद को धन्य महसूस करता है
मैं इस बात के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ कि गुरु साहिब ने मुझसे निरंतर सेवा ली है
पिछले वर्ष नवम्बर में ही करतारपुर साहिब कॉरिडोर का खुलना बहुत ही ऐतिहासिक रहा
इस बात को मैं जीवनभर अपने ह्रदय में संजो कर रखूँगा
यह हम सभी का सौभाग्य है कि हमें श्री दरबार साहिब की सेवा करने का एक और अवसर मिला
विदेश में रहने वाले हमारे सिख भाईबहनों के लिए अब दरबार साहिब की सेवा के लिए राशि भेजना और आसान हो गया है
इस कदम से विश्वभर की संगत दरबार साहिब के और करीब आ गई है
साथियो ये गुरु नानक देव जी ही थे जिन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की थी और आज हमने देखा कि दुनियाभर में सिख समुदाय ने किस प्रकार कोरोना के इस समय में लोगों को खाना खिलाने की अपनी परंपरा को जारी रखा है मानवता की सेवा की ये परंपरा हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का काम करती है
मेरी कामना है हम सभी सेवक की तरह काम करते रहे
गुरु साहिब मुझसे और देशवासियों से इसी प्रकार सेवा लेते रहें
एक बार फिर गुरु नानक जयंती पर मेरी बहुतबहुत शुभकामनाएँ
मेरे प्यारे देशवासियो पिछले दिनों मुझे देशभर की कई यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के साथ संवाद का उनकी एड्यूकेशन जर्नी के महत्वपूर्ण इवेंट्स में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है
टेक्नोलॉजी के ज़रिये मैं इतगुवाहाटी आईआईटीदेलही गाँधीनगर की दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी दिल्ली की जनू मायसोर यूनिवर्सिटी और लकनो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से कनेक्ट हो पाया
देश के युवाओं के बीच होना बेहद तरोताजा करने वाला और ऊर्जा से भरने वाला होता है
विश्वविद्यालय के परिसर तो एक तरह से मिनी इंडिया की तरह होते हैं
एक तरफ़ जहाँ इन कैम्पस में भारत की विविधता के दर्शन होते हैं वहीँ दूसरी तरफ़ वहाँ न्यू इंडिया के लिए बड़ेबड़े बदलाव का पैशन भी दिखाई देता है
कोरोना से पहले के दिनों में जब मैं रुबरु किसी इंस्टीट्यूशन की इवेंट में जाता था तो यह आग्रह भी करता था कि आसपास के स्कूलों से गरीब बच्चों को भी उस समारोह में आमंत्रित किया जाए
वो बच्चे उस समारोह में मेरे स्पेशियल गुएस्ट बनकर आते रहे हैं
एक छोटा सा बच्चा उस भव्य समारोह में किसी युवा को डॉक्टर इंजिनियर साइंटिस्ट बनते देखता है किसी को मेडल लेते हुए देखता है तो उसमें नए सपने जगते है मैं भी कर सकता हूँ यह आत्मविश्वास जगता है
संकल्प के लिए प्रेरणा मिलती है
साथियो इसके अलावा एक और बात जानने में मेरी हमेशा रूचि रहती है कि उस इंस्टीट्यूशन के अलुम्नी कौन हैं उस संस्थान के अपने अलुम्नी से रेग्यूलर एंगेजमेंट की व्यवस्था है क्या उनका अलुम्नी नेटवर्क कितना जीवंत है
मेरे युवा दोस्तो आप तब तक ही किसी संस्थान के विद्यार्थी होते हैं जब तक आप वहाँ पढाई करते हैं लेकिन वहाँ के अलुम्नी आप जीवनभर बने रहते हैं
स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद दो चीजें कभी खत्म नहीं होती हैं एक आपकी शिक्षा का प्रभाव और दूसरा आपका अपने स्कूल कॉलेज से लगाव
जब कभी अलुम्नी आपस में बात करते हैं तो स्कूल कॉलेज की उनकी यादों में किताबों और पढाई से ज्यादा कैम्पस में बिताया गया समय और दोस्तों के साथ गुजारे गए लम्हें होते हैं और इन्हीं यादों में से जन्म लेता है एक भाव इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ करने का
जहाँ आपके व्यक्तित्व का विकास हुआ है वहाँ के विकास के लिए आप कुछ करें इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है मैंने कुछ ऐसे प्रयासों के बारे में पढ़ा है जहाँ पूर्व विद्यार्थियों ने अपने पुराने संस्थानों को बढ़चढ़ करके दिया है
आजकल अलुम्नी इसको लेकर बहुत सक्रिय हैं
इतियांस ने अपने संस्थानों को कॉन्फ्रेंस सेंटर्स मैनेजमेंट सेंटर्स इन्क्यूबेशन सेंटर्स जैसे कई अलगअलग व्यवस्थाएं खुद बना कर दी हैं
ये सारे प्रयास वर्तमान विद्यार्थियों के लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करते हैं
ईआईटी दिल्ली ने एक एंडोमेंट फंड की शुरुआत की है जो कि एक शानदार आईडीईए है
विश्व की जानीमानी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के एंडोमेंट्स बनाने का कल्चर रहा है जो स्टूडेंट्स की मदद करता है
मुझे लगता है कि भारत के विश्वविद्यालय भी इस कल्चर को इंस्टीट्यूशनलाइज करने में सक्षम है
जब कुछ लौटाने की बात आती है तो कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं होता है
छोटे से छोटी मदद भी मायने रखती है
हर प्रयास महत्वपूर्ण होता है
अक्सर पूर्व विद्यार्थी अपने संस्थानों के टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में बिल्डिंग के निर्माण में अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स शुरू करने में स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
कुछ स्कूलों की ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन ने मेंटरशिप प्रोग्रामेस शुरू किए हैं
इसमें वे अलगअलग बैच के विद्यार्थियों को गाइड करते हैं
साथ ही एड्यूकेशन प्रॉस्पेक्ट पर चर्चा करते हैं
कई स्कूलों में खासतौर से बोर्डिंग स्कूलों की अलुम्नी एसोसिएशन बहुत स्ट्रोंग है जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और कम्यूनिटी सर्वाइस जैसी गतिविधियों का आयोजन करते रहते हैं
मैं पूर्व विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहूँगा कि उन्होंने जिन संस्था में पढाई की है वहाँ से अपनी बॉन्डिंग को और अधिक मजबूत करते रहें
चाहे वो स्कूल हो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी
मेरा संस्थानों से भी आग्रह है कि अलुम्नी एंगेजमेंट के नए और इनोवेटिव तरीकों पर काम करें
क्रिएटिव प्लेटफार्म्स डेवलप करें ताकि अलुम्नी की सक्रिय भागीदारी हो सके
बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ही नहीं हमारे गांवो के स्कूल्स का भी स्ट्रोंग वाइब्रेंट एक्टिव अलुम्नी नेटवर्क हो
मेरे प्यारे देशवासियो 5 दिसम्बर को श्री अरबिंदो की पुण्यतिथि है
श्री अरबिंदो को हम जितना पढ़ते हैं उतनी ही गहराई हमें मिलती जाती है
मेरे युवा साथी श्री अरबिंदो को जितना जानेंगें उतना ही अपने आप को जानेंगें खुद को समृद्ध करेंगें
जीवन की जिस भाव अवस्था में आप हैं जिन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आप प्रयासरत हैं उनके बीच आप हमेशा से ही श्री अरबिंदो को एक नई प्रेरणा देते पाएंगें एक नया रास्ता दिखाते हुए पाएंगें
जैसे आज जब हम लोकल के लिए वोकल इस अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो श्री अरबिंदो का स्वदेशी का दर्शन हमें राह दिखाता है
बांग्ला में एक बड़ी ही प्रभावी कविता है
छुई शुतो पॉयमॉन्तो आशे तुंग होते
दियशलाई काठि ताउ आसे पोते
प्रोदीप्ती जालिते खेते शुते जेते
किछुते लोक नॉय शाधीन
यानि हमारे यहां सुई और दियासलाई तक विलायती जहाज से आते हैं
खानेपीने सोने किसी भी बात में लोग स्वतन्त्र नहीं है
वो कहते भी थे स्वदेशी का अर्थ है कि हम अपने भारतीय कामगारों कारीगरों की बनाई हुई चीजों को प्राथमिकता दें
ऐसा भी नहीं कि श्री अरबिंदों ने विदेशों से कुछ सीखने का भी कभी विरोध किया हो
जहाँ जो नया है वहां से हम सीखें जो हमारे देश में अच्छा हो सकता है उसका हम सहयोग और प्रोत्साहन करें यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फोर लोकल मन्त्र की भी भावना है
ख़ासकर स्वदेशी अपनाने को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा वो आज हर देशवासी को पढ़ना चाहिये
साथियो इसी तरह शिक्षा को लेकर भी श्री अरबिंदो के विचार बहुत स्पष्ट थे
वो शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान डिग्री और नौकरी तक ही सीमित नहीं मानते थे
श्री अरबिंदो कहते थे हमारी राष्ट्रीय शिक्षा हमारी युवा पीढ़ी के दिल और दिमाग की ट्रेनिंग होनी चाहिये यानि मस्तिष्क का वैज्ञानिक विकास हो और दिल में भारतीय भावनाएं भी हों तभी एक युवा देश का और बेहतर नागरिक बन पाता है श्री अरबिंदो ने राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर जो बात तब कही थी जो अपेक्षा की थी आज देश उसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए पूरा कर रहा है
मेरे प्यारे देशवासियों भारत मे खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे है
बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं
बरसों से किसानों की जो माँग थी जिन मांगो को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था वो मांगे पूरी हुई हैं
काफ़ी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरुप दिया
इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बन्धन समाप्त हुये हैं बल्कि उन्हें नये अधिकार भी मिले हैं नये अवसर भी मिले हैं
इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है
महाराष्ट्र के धुले ज़िले के किसान जितेन्द्र भोइजी ने नये कृषि कानूनों का इस्तेमाल कैसे किया ये आपको भी जानना चाहिये
जितेन्द्र भोइजी ने मक्के की खेती की थी और सही दामों के लिए उसे व्यापारियों को बेचना तय किया
फसल की कुल कीमत तय हुई करीब तीन लाख बत्तीस हज़ार रूपये
जितेन्द्र भोइ को पच्चीस हज़ार रूपये एडवांस भी मिल गए थे
तय ये हुआ था कि बाकी का पैसा उन्हें पन्द्रह दिन में चुका दिया जायेगा
लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें बाकी का पेमेन्ट नहीं मिला
किसान से फसल खरीद लो महीनों महीनों पेमेन्ट न करो संभवतः मक्का खरीदने वाले बरसों से चली आ रही उसी परंपरा को निभा रहे थे
इसी तरह चार महीने तक जितेन्द्र जी का पेमेन्ट नहीं हुआ
इस स्थिति में उनकी मदद की सितम्बर मे जो पास हुए हैं जो नए कृषि क़ानून बने हैं वो उनके काम आये
इस क़ानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के तीन दिन में ही किसान को पूरा पेमेन्ट करना पड़ता है और अगर पेमेन्ट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है
कानून में एक और बहुत बड़ी बात है इस क़ानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएमSDM को एक महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा
अब जब ऐसे कानून की ताकत हमारे किसान भाई के पास थी तो उनकी समस्या का समाधान तो होना ही था उन्होंने शिकायत की और चंद ही दिन में उनका बकाया चुका दिया गया
यानि कि कानून की सही और पूरी जानकारी ही जितेन्द्र जी की ताकत बनी
क्षेत्र कोई भी हो हर तरह के भ्रम और अफवाहों से दूर सही जानकारी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सम्बल होती है
किसानों में जागरूकता बढ़ाने का ऐसा ही एक काम कर रहे हैं राजस्थान के बारां जिले में रहने वाले मोहम्मद असलम जी
ये एक किसान उत्पादक संघ के सीईओ भी हैं
जी हाँ आपने सही सुना किसान उत्पादक संघ के सीईओ
उम्मीद है बड़ी बड़ी कम्पनियों के सीईओएस को ये सुनकर अच्छा लगेगा कि अब देश के दूर दराज वाले इलाको में काम कर रहे किसान संगठनों मे भी सीईओएस होने लगे हैं तो साथियो मोहम्मद असलम जी ने अपने क्षेत्र के अनेकों किसानों को मिलाकर एक WhatsApp ग्रुप बना लिया है
इस ग्रुप पर वो हर रोज़ आसपास की मंडियो में क्या भाव चल रहा है इसकी जानकारी किसानों को देते हैं
खुद उनका एफपीओ भी किसानों से फ़सल खरीदता है इसलिए उनके इस प्रयास से किसानों को निर्णय लेने में मदद मिलती है
साथियो जागरूकता है तो जीवंतता है
अपनी जागरूकता से हजारों लोगों का जीवन प्रभावित करने वाले एक कृषि उद्यमी श्री वीरेन्द्र यादव जी हैं
वीरेन्द्र यादव जी कभी ऑस्ट्रेलिया में रहा करते थे
दो साल पहले ही वो भारत आए और अब हरियाणा के कैथल में रहते हैं
दूसरे लोगों की तरह ही खेती में पराली उनके सामने भी एक बड़ी समस्या थी
इसके सोल्यूशन के लिए बहुत व्यापक स्तर पर काम हो रहा है लेकिन आज मन की बात में मैं वीरेन्द्र जी को विशेष तौर पर जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके प्रयास अलग हैं एक नई दिशा दिखाते हैं
पराली का समाधान करने के लिए वीरेन्द्र जी ने पुआल की गांठ बनाने वाली स्ट्रॉ बालेर मशीन खरीदी
इसके लिए उन्हें कृषि विभाग से आर्थिक मदद भी मिली
इस मशीन से उन्होंने पराली के गठठे बनाने शुरू कर दिया
गठठे बनाने के बाद उन्होंने पराली को एग्रो एनर्जी प्लांट और पेपर मिल को बेच दिया
आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वीरेन्द्र जी ने पराली से सिर्फ दो साल में डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार किया है और उसमें भी लगभग 50 लाख रुपये मुनाफा कमाया है
इसका फ़ायदा उन किसानों को भी हो रहा है जिनके खेतों से वीरेन्द्र जी पराली उठाते हैं
हमने कचरे से कंचन की बात तो बहुत सुनी है लेकिन पराली का निपटारा करके पैसा और पुण्य कमाने का ये अनोखा उदाहरण है
मेरा नौजवानों विशेषकर कृषि की पढ़ाई कर रहे लाखों विद्यार्थियों से आग्रह है कि वो अपने आसपास के गावों में जाकर किसानों को आधुनिक कृषि के बारे में हाल में हुए कृषि सुधारो के बारे में जागरूक करें
ऐसा करके आप देश में हो रहे बड़े बदलाव के सहभागी बनेंगे
मेरे प्यारे देशवासियो
मन की बात में हम अलगअलग भांतिभांति के अनेक विषयों पर बात करते हैं
लेकिन एक ऐसी बात को भी एक साल हो रहा है जिसको हम कभी खुशी से याद नहीं करना चाहेंगे
करीबकरीब एक साल हो रहे हैं जब दुनिया को कोरोना के पहले केस के बारे में पता चला था
तब से लेकर अब तक पूरे विश्व ने अनेक उतारचढ़ाव देखे हैं
लॉकडाउन के दौर से बाहर निकलकर अब वैक्सीन पर चर्चा होने लगी है
लेकिन कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही अब भी बहुत घातक है
हमें कोरोना के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई को मज़बूती से जारी रखना है
साथियो कुछ दिनों बाद ही 6 दिसम्बर को बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि भी है
ये दिन बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के साथ ही देश के प्रति अपने संकल्पों संविधान ने एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को निभाने की जो सीख हमें दी है उसे दोहराने का है
देश के बड़े हिस्से में सर्दी का मौसम भी जोर पकड़ रहा है
अनेक जगहों पर बर्फ़बारी हो रही है
इस मौसम में हमें परिवार के बच्चों और बुजुर्गों का बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखना है खुद भी सावधानी बरतनी है
मुझे खुशी होती है जब मैं यह देखता हूँ कि लोग अपने आसपास के जरूरतमंदों की भी चिंता करते हैं
गर्म कपड़े देकर उनकी मदद करते हैं
बेसहारा जानवरों के लिए भी सर्दियाँ बहुत मुश्किल लेकर आती हैं
उनकी मदद के लिए भी बहुत लोग आगे आते हैं
हमारी युवापीढ़ी इस तरह के कार्यों में बहुत बढ़चढ़ कर सक्रिय होती है
साथियों अगली बार जब हम मन की बात में मिलेंगे तो 2020 का ये वर्ष समाप्ति की ओर होगा
नई उम्मीदें नये विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे
अब जो भी सुझाव हों आईडीईएएस हों उन्हें मुझ तक जरूर साझा करते रहिए
आप सभी को बहुतबहुत शुभकामनाएँ
आप सब स्वस्थ रहें देश के लिए सक्रिय रहें
बहुतबहुत धन्यवाद